हेलो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे आसमान है।

ऊपर फर्श है जो कि येलो कलर का है लाइट्स भी इसमें रेड और येलो कलर की लगी है।

और जो ये बैड है इसके ऊपर जो चादर है वो वाइट कलर की है दो चार तकिये हैं एक तकिया रेड कलर का है।

हर प्रकार की लाइट्स लगी है ऊपर आसमान है जो कि रंग बिरंगा है लोग यहां पर चल रहे

वो दिखाई दे रहा हैं ये बुद्धा की मूर्ति हैं।

दोस्तों जैसा की आप देख रहे हैं यहां पर बहोत सारी बाइक खड़ी की गई है।

सामने एक आदमी खड़ा है जिसने शायद भिखारी भी लग रहा है और साइड में एक और शॉप है जहां पर पंचो भी लटके हैं।

ऊपर लगे हैं कैमरास और ऊपर से लगी है इन पे बहोत फ्लैशलाइट --

दोस्तों जैसे की आपको दिखाई दे रहा है। यहां है दुकान यहां लिखा है खादी इंडिया --

नीचे बैठे हैं लोग और अपने अपने मोबाइल यंत्र चला रहे हैं।

यह चेयर लेना चाहते हो या कुछ वो पानी जिससे निकलता है वो।

नीचे है टाइले पीछे है पुलिस वाले ऊपर है घर पीछे है देवदार के पेड़--

ग्राउंड पर लगी है लाइट्स और बहोत बड़ी-बड़ी लाइट्स ऊपर है आसमान जो है नीले कलर का --

ऊपर आसमान है काला लेकिन पीछे है एक पेड़ जो है सुनहरे कलर का शायद इन्होंने खुद बनाया है।

नीचे है घास लोग बैठे हैं आगे और ये बोल रहा है गां--

ब्लैक कलर की ऊपर है येलो आसमान सारी आसमान नीचे है यहां पेड़ हरा भरा--